एगो शेर बना कर बैठाया हुआ है तीन गो पत्थर है बहुत सारा --

जो अथि पेंड़ है बहुत सारा पेड़ सूखा पेड़ घांस है।

डॉक्टर खड़े हैं पेसेन्ट सस सोए हुए हैं बिस्तर पे बहुत अ बहुत जरा --

बहुत बड़ा डेंगी है बहुत बड़ा दूर में पोखर अथि नद्दी है अ डेंगी पे अ --

बच्चा का खेलने का वाला बहुत अच्छा --

सैलून है इसमें बाल कटिंग होता है बाल काटता है बहुत सारा क्रीम पाउडर रखा हुआ है।

बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बड़ा-बड़ा इधर घांस है पीछे बहुत सारा कचरा है घांस है बहुत अच्छा लग रहा है।

बुक का दुकान है बहुत बड़ा बुक का दुकान है बुक मिलता है पढ़ने के लिए एक आदमी खड़ा है औरत बैठी --

बच्चा सबके खेलने वाला है हरा कलर के है रेड कलर के बहुत पिचिलने वाला है।

एक लड़की है मम पैर पकड़ी हुई है हांथ उधर की है ब्लू कलर के जींस पहनी है टी-शर्ट पहनी है कुछ --